और काफी सारे काउंटर लगे हुए हैं दीवाल में सटा के और--

ऊपर में एक त्रिशूल भी लगा हुआ है।

काफी सारे पत्थर गिरे हुए हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और चेयर भी लगे हुए हैं दो तीन और बाहर में दो तीन डब्बे--

से काफी अच्छे तरीके से इसको दिया गया है लुक रेड कलर और ब्ल्यू कलर और व्हाइट कलर में इसको लिखा गया है और ब्लैक कलर में।

यह एक हॉल है और हॉल में एक दीवाल पे एल_सी_डी लगा हुआ है और एक रिंग लाइट भी लगा हुआ है।

और काफी अच्छे तरीके से दोनों गद्दे को लगाया गया है।

दीवाल का कलर जो कि व्हाइट और पीला कलर का है।

और आगे एक पहाड़ नजर आ रहा है और बादल जो की काफ़ी अच्छा है।

यह एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल मे काफी अच्छे तरीके से लाइट लगा--

यह एक जींस का दुकान है।

ऊपर में लिखा हुआ है पा पार्क्स ।

एक आदमी साइड में बैठा हुआ है।

यह एक पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता है जो कि पहाड़ को ही काट के पत्थर को ही काट के बनाया गया है।

जहां पर एक कुर्सी लगा हुआ है वहां पर एच_पी लिखा गया है।

और काफी बेहतरीन तरीके से लाइटिंग किया गया है और दो तीन बैग टंगी हुई--

और मंदिर व्हाइट कलर का है।

यह समुद्र है और समुद्र में एक छोटा सा नाव तैर रहा है और एक बड़ा सा नाव है।

और साइड में ही दो तीन लड़के खड़े हैं और एक छोटी बच्ची भी खड़ी है।

एक का बैग मिट्टी कलर का है और एक का बैग बैंगनी कलर का है जो कि दोनों जैकेट पहन के खड़े हैं।

लड़का जो की व्हाइट कलर का टी शर्ट और व्हाइट पैंट पहना हुआ हैं और हाथ में माइक पकड़े हुए हैं।

साइड में ही एक बड़ा सा एलबम लगा हुआ है।